ये एक रेस्टोरेंट का फोटो है जहां पर कुछ लोग खाना खा रहे हैं और कुछ टेबलें खाली है पीछे की ओर काफी अच्छा --

पीछे का नजारा काफी अच्छा है। जहां पर कुछ अच्छी सी सजाबटे कर रखी है। ऊपर व्हाइट कलर का कलर कर रखा हुआ है। नीचे फर्नीचर भी अच्छा है।

हेतराम जी हैं मिस्त्री है इन्होंने अपने मोबाइल नंबर भी लिखे हैं और दूसरे मिस्त्री ओम जी मिस्त्री उन्होंने भी अपने मोबाइल नंबर लिखे हैं।

प्रोडक्ट है और कुछ मशीने ड्रिल मशीने स्टे पंच वगेर भी है।

इसे देखकर लग रहा है कि ये एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट है जिसे शायद क्रोमा सेंटर भी बोला जाता है।

दुकान है पास में ए_टी_एम भी है जो कि आई_डी_बी_आई बैंक का--

लाल कलर की है और नीले कलर की है कुछ पीले कलर की खिड़की नुमा आकृति भी बनाई गई हैं एक लड़का भी दिखाई दे रहा है जो की रैली की ओर से जा रहा है।

इस जगह एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जहाँ पर काफी खिड़कियां हैं और इसका नाम है जोकी पसासनिक भवन के रुप में दिखाई दे रहा है।

ये किसी बीच या पहाड़ के बीच में जो नदी का पानी निकलता है वो दिखाई दे रहा है यहां पर पड़े --

रेली के पास में अच्छे से तारबंदी टाइप कर रखी है ताकि कोई भी उधर पार ना जा सके छोटा समुद्र भी--

उसको कर रहे हैं पत्ते को और नीचे जलियां वगैरा लगाई गई हैं ताकि सीमेंट को सही से काम के रूप में कर सकें।

जिसमें हरे कलर कि पट्टियां हैं कुछ खिड़कियां हैं नीचे बाइक दो से तीन बाइक खड़ी हैं।